सड़क के उपर दो बस लगी हुई हैं सड़क के किनारे कुछ घर बने हुए हैं।

यहाँ अदंर पैसे निकलने वाली मशीन रखी हुई है बाहर कुछ गाड़िया खड़ी --

जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यह प्रकृति का बहोत ही सुंदर दॄश्य है यहाँ पर मानव निर्मित सड़क --

इसका नाम तन्नू अण्ड मन्नू द किड्स फ़ैशन हाउस है। यहाँ पर --

कूड़ा भी है जिस पे कुछ बच्चे बैठे हुए है कुछ आसपास खड़े हैं। यहाँ पे पानी के फव्वारे चल रहे हैं।

यहाँ पर दो लोहे के गेट बने हुये हैं तथा निचे पंजाब नेशनल बैंक भी है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। यह स्टेशनरी की एक दुकान है। यहाँ पे पेन पेन्सिल रबर --

महिलाएँ और बहुत सारे पुरुष खड़े हुए हैं महिलाओं ने बुरखा पहन रखा है तथा पुरुष ऐसे ही खड़े हुए हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर लोग योगा कर रहे हैं। काफी सारे लड़किया और एक पुरुष भी उपस् --

बैगनी लाल मेहरून गुलाबी और हरे रंग की है।

जैसा कि मै देख पा रही हूँ यह एक किराने की दुकान है।

यहाँ पर एक तराजू है एक पानी की बोतल है। यहाँ पर टॉफ़ी कुरकुरा चिप्स अंडा-

एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ बड़े से पेड़ के नीचे सब एकरित होके बैठे हुए हैं तथा कुछ लोग खड़े --